पहाड़ दिख रही पत्थर के गेट वगेरा दिख रहा है। दो घास दिख रहा है ग्रीन कलर दिख रहा है। रज--

एक टंकी दिख रहीं हैं पानी की ऊपर--

मंदिर टाइप का दिख रहा है लाइटे लगी हुई दिख रही है मुर्तिया दिख रहे है पंखे दिख रखे हुए है।